बस नजर आ रहा है ए एक व्यक्ति खड़ा उसके कपड़ों का कलर लाल और काला है और सामने बिल्डिंग नजर आ रही है।

दीवार नजर आ रही है सामने पर्दा दिख रहा है पर्दे का कलर ऑरेंज है चेयर दिख रही है सामने --